यहां पर कुछ मेज और टेबल भी लिखे हुए भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर दीवार का कलर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।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

मेरे सामने एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

वो साफ कर रहा है दिखाई दे रहा है यहां पर एक आदमी साईड में भी दिखाई दे रहा है गाड़ी का कलर व्हाइट --

यहां पर बहुत सारे बु पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे बैलून भी दिखाई दे रहे हैं।

मेरे सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है गार्डन में एक स्टैचू भी दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक ए वन साइकल की शॉप दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारी साइकिलों की पिक्चर भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

मेरे सामने एक सी_एन_जी पंप दिखाई दे रहा है। यहां पर बहोत सारी कारे भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बिल्डिंग गे दिखाई दे रही है।

आमनेके स्टोअर दिखाई दे रहा है स्टोअर में बोहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है यहां पर एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

इसके सामने एक घर दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारी करेटे भी दिखाई दे रही है। करेटे बहोत सारे कलर की दिखाई दे रही है।

मेरे सामने एक सब्जी मंडी दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

लोगों ने अपनी गाड़ियां लगाई हुई दिखाई दे रहीं है यहां पर कुछ आदमी भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर गोभी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे ऑटो भी दिखाई दे रहे हैं।

ये हुंडई का शोरुम दिखाई दे रहा है।

और शिव जी भोला भी दिखाई दे रहे हैं। यहां पर त्रिशूल भी दिखाई दे रहा है। यहां पर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं दिखाई दे रहे --